यहां पर मुझे कुछ मूर्तियां दिख रही हैं।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

यहां मुझे एक पानी की नदी दिखाई दे रही है। यहां मुझे एक--

यहां मुझे एक व्हाइट कलर का जहाज दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक दुख एक व्हाइट कलर की दीवाल में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।